और टमाटर सॉस है हुमायू की चटनी है दहिया लगाया हुआ है।

इसमें लड़कियों के बॉयज के सभी प्रकार के सामान मिलते हैं जो फेस वॉश क्रीम पाउडर --

और इसपे रेल पटरी बिछाई हुई है पास में क्वार्टर लगे हुए हैं।

यहां पर खूब सारी मछलियां है जो मछलियों की कटिंग करते हैं और इस मछलियों के मांस को आगे मार्केट में बेचते हैं।

यह कलेक्शन पुराना है बाहर कुर्सियां लगी हुई है टेबल लगी हुई है जिस पर लोग आ के बैठते हैं और खाना वगैरह सर्व करते हैं।

बर्थडे पार्टी डेकोरेट का सामान मिलता है लक्ष्मी पूजा सामग्री मिलती है।

घरों में डेकोरेट करने के सामान भी यहां पर मिलते हैं यहां पर एक --

बाहर दुकान लगी हुई है जो एक ढाबा है ढाबे के बाहर यह सामान डेकोरेट के लटकाए हुए है और एक बल्ब जल रहा है।

यहां पर नवाज पढ़ने के लिए बच्चे भी आते हैं।

यह एक सब्जी मंडी है जो ठेलो के रूप में लगी हुई है यहां पर लोग--

यह एक योगा इंस्टेल है यहां पर बच्चे व्यायाम कर रहे है जो अपने हेल्थ को--

प्रकार के पेड़ पौधे फूलों के बगीचा जैसा लगा हुआ है बहोत ही खूबसूरत फूल है जो--

पुस्तके मिलती है इसमें नोट बुक बुक्स सभी प्रकार की मिलती है यहां पर एक --

बैठ के स्टडी कर सकते हैं।

लोगों के घरों में पहुंचाता है यहां से लोग--

बाहर डस्टबिन रखा हुआ है जिसमें लोग आते जाते कचरा ना फैलाये इसके अंदर डाल दे।

और ऊपर फैन चल रहे हैं और लाइटे भी जलती हुई दिखाई दे रही है यहां पर ऑफिस में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा--

यहां पर स्वस्थ अभियान चला रखा है यहां पर लोग आए हुए हैं जो साफ सफाई कर रहे हैं।

यहां पर बहोत सारी बिल्डिंग्स सी दिख रही है शॉप वगैरा दिख रहे है यहां पर बहोत सारी गाड़ियां खड़ी है।

सामने टेबल पर गुलाब का फूल रखा हुआ है साम के दीवार पर तस्वीरें लगी हुई है छोटी छोटी --